के काट के गए हैं पेपरसे के।

और एक कंप्यूटर मशीन ।

जहां चारों तरफ लैपटॉप है और--

बहुत से लट भी रखे हुए हैं।